यह एक घर बना हुआ है जो पत्थर से बनाया गया है और बोहत सारे यहाँ पत्थर दिख रहे है अभी ये बन ही रहा है।

मार्केट है मार्केट मे सामने बिल्डिंग दिख रही है बहोत सारे कॉम्पनीयो के पोस्टर लगे हुए है शाइन बोर्ड लगे हुए है एसी भी लगा हुआ है नीचे कुछ लोग हैं।

और कुछ लोग इसमे है और लाइटे जल रही है लाइट है कुछ मेटीरियल नीचे गिरा हुआ--

ये पार्क है पार्क में स्तम्भ बनाये हुए है और बहुत सारे चित्रकारी है इसमें बहुत छोटे छोटे भी स्तंम्भ बने हुए है और आसमान दिख रहा है पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहे है।

और पीछे है बहुत बड़े बड़े पेड़ दिखाई दे रहे है।

और इसमें छोटे-छोटे बहुत सारे पेड़ लगाए हुए है किनारे-किनारे और इसका जो है मेटल्स से इसको बनाया गया है ऊपर आसमान क्लियर है।

ये झील है झील के--

एक द्वार बना हुआ है बलून से और पास सामने बहुत सारे मोटर साईकले लगी हुई है छत्ता कस्टमर के होंगे।

--और दुकाने दिखाई दे रही है बहुत सारे अ-पार्किंग में मोटरसाइकिल है कुछ लोग आपस में बात करते हुए है और इस की बिल्डिंग जो है पूरी वाइट कलर की है।

ये एक सलून है अ स्टाइलिश सलून है इसमें एक चेयर लगा हुआ है और लाइटें जल रही है और सामान रखे हुए है।